यह डीजे है जो शादी पार्टी में या फिर कोई ओकेशन के लिए मंगाया जाता है। जिस --

यह एक बहुत ही प्यारी तस्वीरे हैं यहाँ पे शिप हैं और मोर का भी हैं यहाँ पे।

यह एक कांच का उम कांच की अलमारी दिखाई दे रही है जहाँ पे तीन बड़ी बोतल दिखाई दे रही है ऊपर चार बॉटल्स रखी हुई हैं बड़ी-बड़ी जिनमें नीला सफ़ेद गुलाबी --

यहाँ दूल्हा-दुल्हन की कुर्सी हैं जो की सिल्वर कलर में रखी हुई हैं सिल्वर रेड में और पीछे जो बैकग्राउंड हैं वह गोल्डन कलर का इस पे स्टेज बना हुआ है।

नीचे पट्टी बिछी हुई है रेड कलर की और बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहें हैं यहाँ प--

यह एक क्लास है कोचिंग क्लास बोल सकते हैं कोचिंग क्लास है स्कूल क्लास है जो की यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

यहाँ टाइल्स को नाप रहे है एक बंदा जो है वो टाइल्स को नाप रहा है जो पत्थर लगा हुआ है नीचे --

पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे बड़े पौधे छोटे पौधे और उस साइड कुछ उधर कुछ घर बने हुए हैं घर जैसा दिखाई दे रहा हैं और इधर से रोड गयी है इस बाग कि--

यह बहुत बड़ी चट्टान है। इसके नीचे यह बंदा खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक पैंट शूज जूते पहन रखा है।

व्हाइट लाइनिंग वाली और यहां पे बहुत सारे चट्टाने दिखाई दे रही हैं छोटे-छोटे चट्टान भी दिखाई दे रही है।

यह बन्दा यहाँ से फोटो खिचवा रहा जो की जिन्स टीशर्ट पहना हुआ हैं।